चारों तरफ बहोत से पेड़ पौधे है और हरियाली छाई हुई है।

मिनटिंडे पे दोनों हाथ पेंट में घुसाए हुए हैं।

पीछे की ओर एक डोनेशन बॉक्स है जिसको --

इस फोटो में बाहर का भी दिखाया गया है राइट साइड एक गाड़ी खड़ी है जिसके सामने तीन लोग कुछ सामान निकल रहे हैं।

एक फले व्यक्ति ने काला कलर का शर्ट और नीचे पेंट पहना है और उसके पीछे नीले कलर का शर्ट पहना हुआ व्यक्ति खड़ा है।

उसके लेफ्ट साइड एक महिला भी देखी जा सकती है।

फोटो में हरा भरा मैदान दिखाया ज गया है।

इस फोटो में दो देखे जा सकते हैं राइट में का सीलिंग घास से बना हुआ है।

और उसके पीछे एक स्कैनर भी रखा हुआ है।

आगे के साइड एक क्लॉक टावर है जो बहुत चमक रहा है।